जिसमें परफार्म कर रहा है।

एक उसके बीच एक लड़का लड़का माने नौजवान--

जो नदि के सामने खड़ा होकर कुछ बात कर रहे हैं।

आगे बोतल है।

यह बैंक है बेलागावी ब्रांच का।

जो की अ बहुत सुंदर दिख रहा है।

उसका पीछे में एक ओटो --

और ये रात का है शायद--

ये पिक्चर है किसी रूम का--

यहा पे दिखाई दे रा है ढेर सारा कलर ।

और यहां से दिखाई पर रहा बहुत बरा पत्थर।

और कस्टमर वहां पे सामान ले रहा हैं।

कुछ डाक्यूमेंट्स बनाता है शायद।

सबसे सुंदर वो घर है।

ये रात का व्यू है।

यह एक कमरा है।

जो कि मालिक का है।

ब्रिंजल कलर का दरवाजा दिख रहा है येलो कलर का--

और नीचे में एक डस्टबिन है।

व्हाइट कलर का पेंट --

लेकिन ये ढेर सारा और कुछ पेड़ों के पीछे वायर दिखाई दे रहा है।

जो पुराना हो के डिस्कलर हो गया हो।

इस पिक्चर में है एक अजीब सा स्कूटी लंबा से--

पीछे में लिखा है वी लव प्रोडाटार ।

जोकि लैपटॉप चला रहे हैं।

उसका ऊपर में से एक भगवान का भी फोटो है।

इस पिक्चर में है ब्लैक कलर का चेयर और टेबल ।

जो कि ब्रिज बना रहा है।

आसपास में कोई भी नहीं इस खाली जगह है।

पोस्ट रेड कलर का है।

वहां पे एक पेन ये सब रकने वाला एक छोटा सा है।

और आगे जाके थोड़ा भीड़ जमा हो रहा है यहां में।

और ढेर सारा वायर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर --

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने फूल को फे बेज रहे है।

एक खड़ा हो गया है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में कुछ हिरन है यहां में।

क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है।